सब्जियों के टमाटर सब लोग एकत्रित हुवे हैं। यहाँ पे सब खरीद --

पे कुछ सैंपल्स अंहां कैन में भरे हुए रखे हुए हैं।

अण्ड तीनों ने येलो अण्ड वाइट टीशर्ट और ये वाले बच्चे ने रेड टीशर्ट पहन के रखी है।

एंड इसका जो बेस है वो व्हाइट है यहाँ पे ऊन से बनाया गया हैं।

एक ही थाली में दूल्हा-दुल्हन खाना खा रहे हैं। ये जो समारोह होता है न ये वो समारोह वो है।